ओ सड़क पर कुछ व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हैं इस स्कूल के आस पास कुछ लाइटे भी खड़ी है।

यह एक गोदाम है इस गोदाम के अंदर बहुत सारे कट्टे के ढेर लगे हैं।

और इसका दीवारों का कलर व्हाइट है उसमें एक ब्लू कलर का बेड भी पड़ा है।

और इस रूम के बाहर लिखा हुआ है इंग्लिश में।